यहाँ हमे एक बतख दिखाई दे रही है इन तीन चार बतख दिख रही है जो --

दिख रहा है लाइट के खम्बे भी हमें दिखाई दे रहे हैं और बिजली के तार भी।

यहाँ में एक अ छोटा सा बोर्ड दिख रहा है जिस पर पूरा ग्राम लिखा हुआ है।

अर्पित ज्वेलर्स लिखा हुआ है। यह एक सुनार की दुकान है। इसके बाहर हमें उम्म अ एक --

सॉरी एं तार भी रखे हुए हैं। कुछ ईटे भी पड़ी हुई --

अ जिसमें घोड़ा और एक आदमी बना हुआ है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है कुछ लोग यहाँ से निकलकर जा रहे हैं।

यहाँ मे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है। जहां पर कुछ लोग अपना वर्क करते हुए।

नज़र आ रहे है। एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है और बहुत सारे यहाँ पर डाक्यूमेंट्स भी रखे हुए हैं। कुर्सी दिखाई दे रही है जो --

और कुछ पंडित बाहर खड़े हुए हैं जिन्होंने पीले कलर के कपड़े पहने रखे हैं। कुछ लोग यहाँ पर दर्शन के लिए खड़े हुए --